आ कुछ हीराे का फोटो भी लगा हुआ है।

इस फोटो में किसी डॉक्टर का क्लिनिक दिख रह है जिसका नाम डॉक्टर शिव शंकर महतो है।

और एक ब्लैक टी-शर्ट में है और एक ब्लू टी-शर्ट में है।

ब्लू टी-शर्ट वाला कुछ ज्यादा ही --

हाँ तो ये चौधरी साइकिल स्टोर्स है जहाँ हीरो एवोन --

और बगल में श्री साई करके कुछ लिखा हैं।

और कुछ कोई एक भिखारी बैठा हुआ है शायद।

यह किसी फैक्‍ट्री का सीन दिख रहा है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्‍लाई --

हो सकता है कोई ग्‍लेशियर हो जहाँ से सुंदर दृश्‍य नजर आ रहा है।

दरवाजा दिख रहा है जहां पे एक जेन्‍ट्स खड़ा हु हुआ है।

फ़ोटो शूट करवा रहे पीछे कई सारे लोग आपस में --

पौधे हैं ये लंबे-लंबे पेड़-पौधे हैं।

ये किसी सिटी का ओवरव्यू लिया गया सीन है जो --

ग्लास जो है वो साइड में रखा हुआ है।

इसमें बो इसमें एक बहुत भीड़ दिख रही है।

पैंट और फूटा हुआ फर्श है। एक देवी का मंदिर दिख रहा है।

बरगद का पेड़ ही है जो कि काफी लंबा चौड़ा --

बूँद दिख रहा है और दो-तीन बाइक लगा हुआ है।

और फील्ड में छोटी-छोटी झाड़ियां है और --

पोस्टर भी चिपका रखा हुआ है जो कि बाद में उखाड़ दिया गया है।